ये एक बड़े खुले मैदान में बना हुआ रिजॉर्ट या रेस्टोरेंट है।

बीच में हरी घास और पत्थरों का रास्ता है।

इस तस्वीर में एक छोटी लाइब्रेरी या पढ़ाई करने की जगह दिखाई दे रही है।

एडवेंचर राइडिंग और पहाड़ी इलाकों के यात्रा के लिए तैयार है।

ये एक छोटा मंदिर या पूजा की जगह है।

ये जगह सुंदर सजी हुई और शान लग रही है।

इस तस्वीर में एक बरा और रंगीन गेट दिखाई दे रहा है गेट पीली और लाल रंगों से अच्छे से सजावट किया हुआ है।

चर्च के आगे एक हिस्से में खंभे और साधारण छत हैं।

और जमीन पर हरि घास और पत्थर का रास्ता दिख रहा है।

ये एक छोटी दुकान या धार्मिक वस्तुओं की शॉप की फोटो है।

यहां बहुत सारी रेफ्रिजरेटर है जो डिफरेंट कलर्स आ फ्लोरल पैटर्न्स मे स्टैक है।

और लेफ्ट साइड पर कुछ वाशिंग मशीन्स भी रखी हुई है।

इसमें दो हिस्से हैं आगे के हिस्से में दीवारों पर लकड़ी है और तीन छोटे बिस्तर या बैठने की जगह रखी है।

पीछे की तरफ एक ऊंची लकड़ी की दीवार है।

ये एक बड़े ग्रीन हाउस या पौधे शाले के अंदर का दृश्य है।

यहां बर्फ से ढका हुआ एक पहारी इलाका है।

बहोत सारी अलग अलग तरह की चप्पले सैंडले और जूते--

दिवार सफेद है और उस पर जाली लगी खिड़कियां और दीवार से है।

बीच में नीले हरे रंग का चौरा दरिया बह रहा है।

ये एक कपड़ों का स्टोर है जहां दो--

बड़े रैक्स और बहुत सारे शर्ट टॉप्स का सेल है।

इस तस्वीर में ये कपड़ों की दुकान का अंदर का हिस्सा दिख रहा है।

बस का दरवाजा खुला है और अंदर कुछ लोग बैठे हुएं हैं।

इस तस्वीर में एक नीली रंग की बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसके ऊपर करना श्री--

मलाड का इंस्टिट्यूट लिखा है बिल्डिंग के पास एक रास्ता और सीरिया पहाड़ी पर जाती हुई दिख रही है।

बाएं तरफ एक सफेद और नीली रंग की दूसरी बिल्डिंग है।

पीछे पहाड़ हरियाली से भरी हुई दिख रही हैं।

ये जगह प्रकृति के बीच एक सुकून भरी पहाड़ी एरिया लगती है।

ये एक जिम या फिटनेस सेंटर का अंदर का दृश्य है।

कई सारी ट्रेडमिल मशीन लाइन में लगी है और बीच में जमीन पर एक पंचिंग बैग लटक रहा है।

और उन पर दो पुरानी हरी बेंच --

ये एक बड़े पहाड़ी इलाके का दृश्य है।

और नीचे एक छोटा फाउंटेन भी दिख रहा है।

रास्ते के किनारे लाल कपड़े और सफेद रोशनी वाले खंभे से सजावट की गई है।

आसमान बहोत नीला और साफ है।

और नीचे की तरफ हरियाली और कोहरा दिख रहा है।

ये किसी मेडिकल स्टोर या जानवरों के दवाइयों का दुकान का अंदर का हिस्सा है।

इसमें पानी का रंग हल्का हरा है ओ--